सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर की उपयोगिता पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि सिनैप्टिक पैकेज मैनेजरउपयोगित उबंटू में एप्लीकेशन कैसे संस्थापित करें
इस ट्यूटोरियल को समझाने के लिए मैं ग्नुम एन्वाइरन्मेन्ट डेस्कटॉप के साथ उबंटू 1004 का इस्तेमाल कर रही हूँ
सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करने के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होना चाहिए
इंटरनेट संपर्क अच्छे से काम करना चाहिए
तो पहले सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर खोलें
उसके लिए कृपया पहले सिस्टम फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएँ और फिर सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर क्लिक करें
यहाँ एक ऑथेन्टकैशन डाइलॉग बाक्स दिखाई देगा जो पासवर्ड पूछेगा
अब पासवर्ड टाइप करें और एंटर दबायें
जब हम पहली बार सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करते हैं एक परियच डायलॉग बाक्स दिखाई देता है
इस डायलॉग बाक्स में सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर के उपयोग करने से संबधित जानकारी होती है
अब हम सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर में एक एप्लीकेशन या पैकेज संस्थापित करने के लिए रिपोजिटरी और प्रोक्सी कन्फिगर करते हैं
यह करने के लिए सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर विंडो पर जाते है

कृपया सेटिंग पर जाएँ और प्रेफरन्सस पर क्लिक करें
प्रेफरन्स विंडो पर कई टैब हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं
प्रोक्सी सेटिंग कन्फिगर करने के लिए नेटवर्क पर क्लिक करें
यहाँ प्रोक्सी सर्वर में दो ऑप्शन हैं डाइरेक्ट कनेक्शन और मैन्यूअल कनेक्शन
मैं मैन्यूअल प्रोक्सी कन्फिगरेशन का उपयोग कर रही हूँ जैसा यहाँ दिखाया है
आप अपना अधिमान्य ऑप्शन चुन सकते हैं
ऑथेन्टकैशन बटन पर क्लिक करें
एचटीटीपी ऑथेन्टकैशन विंडो स्क्रीन पर दिखाई देता है
कृपया यूजरनेम और पासवर्ड एंटर करें यदि आवश्यकता हो तो और ओके पर क्लिक करें
अब परिवर्तन को लागू करने के लिए एप्लाई पर क्लिक करें
विंडो को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें
अब फिर से सेटिंग पर जाएँ और रिपाज़िटरिस पर क्लिक करें
स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर सोर्सेस विंडो दिखता है
उबंटू सॉफ्टवेयर डाउनलोड़ करने के लिए कई सोर्सेस हैं
डाउनलोड़ फ्रोमडाउनलोड फ्रॉम ड्रोप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और रिपाज़िटरिस की सूची को देखने के लिए माउस बटन को पकड़ कर रखें
ओथर ग्लोब पर सर्वरस की सूची दिखाता है
इस विंडो को बंद करने के लिए कैन्सल पर क्लिक करें
मैं सर्वर फोर इंडिया का उपयोग कर रही हूँ जैसा यहाँ दिख रहा है
साफ्टवेयर सोर्सेस विंडो को बंद करने के लिए क्लोजक्लोजपर क्लिक करें
इस टूल का उपयोग कैसे किया जाय यह सीखने के लिए उदाहरण के रूप में मैं अभी वीएलसी प्लेअर संस्थापित करूँगी
यदि आप सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको पैकेजस को रिलोड़ करने की आवश्यकता है
ऐसा करने के लिए टूल बार पर रिलोड़ बटन पर क्लिक करें
यह कुछ सैकण्ड ले सकता है
यहाँ हम देख सकते हैं कि पैकेजस इंटरनेट के माध्यम से हस्तांतरित किये जा सकते हैं और अपडेटेड हो सकते हैं
जब रिलोड़िंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो क्वीक सर्च बाक्स पर जाएँ जो कि टूल बार पर है और वीएलसी टाइप करें
यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी वीएलसी पैकेजस सूचीबद्ध हैं
वीएलसी पैकेज वाएलसी पैकेज को चुनने के लिए कृपया चेक बाक्स पर क्लिक करें और मेन्यू बार पर प्रदर्शित मार्क फोर इंस्टॉलेशन ऑप्शन को चुनें
एक डायलॉग बाक्स रिपाजिटरी पैकेज की पूरी सूची दिखा रहा है
स्वतः ही सभी निर्भर पैकेज को मार्क करने के लिए मार्क बटन पर क्लिक करें
टूल बार पर जाएँ और एप्लाई एप्ली बटन पर क्लिक करें
समरी विंडो संस्थापित करने के लिए पैकेजस का ब्योरा दिखा रहा है
संस्थापन शुरू करने के लिए एप्लाईएप्ली बटन पर क्लिक करें
संस्थापन की प्रक्रिया कुछ समय लेगी जो कि संस्थापित होने वाले पैकेजस की संख्या और साइज़ पर निर्भर करता है
पहले कि तरह यह कुछ समय लेगा
डाउनलोड़िंग पैकेज फाइल डाउनलोडिंग पैकेज फाइल विंडो बंद हो जायेगी जैसे ही संस्थापन पूर्ण हो जायेगा
अब हम देख सकते हैं कि वे बदलाव लागू हो रहे हैं

हमने देखा कि वीएलसी अब संस्थापित हो गया है
सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर विंडो को बंद करें
अब सत्यापित करते हैं यदि वीएलसी प्लेयर सफलतापूर्वक संस्थापित हुआ है
यह करने के लिए एप्लीकेशन gt साउंड और विडियो पर जाएँ
यहाँ हम देख सकते हैं कि वीएलसी मीडिया playerवीएलसी मीडिया प्लेअर सूचीबद्ध है अर्थात वीएलसी सफलतापूर्वक संस्थापित हो गया है
उसी तरह हम सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके अन्य एप्लीकेशन्स संस्थापित कर सकते हैं
मैं सार प्रस्तुत करती हूँ इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर में प्रोक्सी और रिपोजिटरी कन्फिगर करते हैं
कैसे सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके एप्लीकेशन या पैकेज संस्थापित करते हैं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
अधिक जानकारी निम्नलिखित लिंक httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आयआयटी मुम्बई की ओर से मैं सकीना अब आप से विदा लेती हूँ